रस्ते के चारो ओर नारियल पेड़ है नारियल पेड़ सफ़ेद और काले रंग के दिखरहे है नारियल पेड़ के अलावा बाकी का भाग रंगबिरंगी दिखरहा है.

पानी धीरे धीरे बीच को छु रहा है और यह दरिषय बहुत सुबदर दिख रहा है | आकाश मे बादल घेरे हुए है ।

द्रश्य में किसी सेलिब्रेशन की चित्र दिखाई गयी है लोगों ने लुंगी नामक एक ट्रेडिशनल पोशाक पहनी हुवी है.